और एक आदमी सामने नीला और हरा बना हुआ है। एक औरत बच्चा लिया हुआ है। पीछे कुछ आदमी है। नीचे का फर्श साफ --

पीछे साइड में कुछ टोकरी रखी हुई है और नीचे कुछ रंगीन दिखाई दे रहें हैं।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

और लाइट बहोत जल रही है। एक श्री राजेश्वरी बैंक दिखाई दे रही है।

माला टंगा हुआ हैऔर पीछे साइड में एक आदमी है जो फूल रखा हुआ हैपीछे खुला हुआ आसमान दिखाई दे रहा है लोहे का एंगल भी दिखाई दे रहा है।

आइए सामने एक टेबुल है। टेबुल के ऊपर बहुत से डब्बे रखे हुए है। डब्बे में समान रखे हुआ है। एक आदमी बैठ हुआ है निचे का फर्स साफ है।

चित्र में एक ईसाई धर्म का हॉल दिखाई दे रहा है और ऊपर ईसाई धर्म का चिन्ह बना हुआ है।